इस होटल में तरह तरह के बैलून लगाया गया है।

बैठने के लिए यहां कुर्सियां बनाया गया है।

और सीढियाँ भी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान का दरवाजा शेटर वाला है।

इस मकान का कलर --

इस दुकान में हर प्रकार का नाश्ता मिलता है।

यहां पे आदमी लोग भी हैं और एक फ्रिज है।

यहां पे काफी वायर दिख रहे है।

और रेलवे क्रासिंग दिख रहा है।